यहां पे सरिया लगी हुई है जो लोहे की है जगह जगह पर है।

आसपास पेड़ पौधे है वहां पे जे_सी_बी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत सारे ऑटो है जो लाल पीले और काले हैं।